जैसा कि इस तस्वीर मे आप देख रहे होंगे और ये बहुत प्यारी काली बैल अपना चारा खा रही है।

-- की बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मशीनों में और फैक्टरियों में डलवाया जाता है जो की ये इसमें--

जैसा की इस तस्वीर में आप देख सकते है किसी का जन्म दिन होने वाला है और ये बहुत ही स्वादिस्ट केक रेडी है जिस पर छोटे छोटे दिलों को रखके सवांरा गया है।

जैसा की तस्वीर में देख रहे है किसी ने अपने गाड़ी इधर खड़ाई है जिसे कोई बंदा इसको साफ-सुथरा बना रहा है।